यहाँ पर एक मैंदान में एक रोज रखी हुई है और यहाँ पर एक सॉकेज रखा हुआ है। जहाँ पर --

यहाँ पर नीले कलर से मेट डली हुई है जहां पर व्यक्ति योगासन कर रहे हैं। सामने दीवार पर भी बैनर लगा हुआ है।

यहां पर वाइट कलर से एक घर बना हुआ है जहां पर बगल में पेड़-पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर दो खंबे बने हुए हैं जोकि कत्था कलर से है।

यहां पर छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं फूलों के।

लोहे के पाइप लगे हुए है और यहाँ पर रेड कलर से चेयर डली हुई है। लाइट के खंबे लगे हुए है और यहाँ पर पीले कलर से सोफ़े भी रखे हुए है और यहाँ पर कुछ गाड़िया --

यहाँ पर एक कत्था कलाव से शोपिश रखा हुआ है और यहाँ पर एक गैस रखा हुआ है और यहाँ पर पानी की बौटल रखी हुईं है।

यहाँ पर एक सैलून खुला हुआ है। सैलून में एक ब्लैक कलर सी चेयर डली हुई है और यहाँ पर एक आईना लगा हुआ है। लाइट --

जो की कांच की है नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई है नीचे सीढियाँ बनी हुई है सीढ़ियों पर रेलिंग लगी हुई है।

यहाँ पर चित्रकला प्रतियोगिता चल रही है। जहां पर बच्चे चित्र बना रहे हैं और यहाँ पर टेबले डली हुई है जो कि स्लेटी कलर से है।

यहाँ पर एक स्टेट बैं स्टेट बैंक ऑफ़ ए.टी.एम. खुला हुआ है यहाँ पर ए.टी.एम. का गेट कांच से बना हुआ है यहाँ पर --

यहाँ एक सफेद कलर से केक रखा हुआ है। जिसमें पिंक कलर से हरे कलर से रेड कलर से और ब्लैक कलर से डिजाइने बनी हुई हैं।